जहाँ पे हरेक प्रकार के बुक और पेन मिल जाते हैं।

यहाँ पे एक व्यक्ति के घर के सामने बहुत से पब्लिक खड़ी हुई हैं।

जो की पूरी रियल हो यहाँ ईटों के कलर से पूरी तरह से कलर किया गया है।

यहाँ खेत में बहुत ही साफ़ और सफ़ेद पानी है ।

यहाँ पर एक ग्लूकोज प्लस का उ क्रीम उ और लोशन रखे हुए हैं।

यहाँ ग्राउंड में बहुत सारे हरी-हरी घासे लगी हुई है ।

और यहाँ पे बिल्डिंग के सामने बहुत ही बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।